यहां में बहुत सारा फ्लावर्स दिखाई दे रहा है जो ब्रिंजलवाज येलो और ग्रीन कलर का है।

दो पाइप दिखाई दे रहा है जो ऑरेंज और सफेद कलर का है।

यहां हमें एक जहाज दिखाई दे रहा है जो ब्लैक और ब्राउन कलर का है।

यह एक घर है जो सफेद और ऑरेंज कलर से बनाया गया है।

बहुत सारा कुर्सी दिखाई दे रहा है ग्रे कलर का जो लोहा से बनाया गया है ।

बहुत सारा मछलियां दिखाई दे रहा है।

दो लड़का दिखाई दे रहा है जो ब्राउन और सफेद कलर से बनाया हुआ पहना हुआ है।

यहाँ हमें बहुत सारा लड़की और लड़का दिखाई दे रहा है जो ब्लैक ब्लू और सफेद कलर का कपड़ा पहना हुआ है।

एक घर दिखाई दे रहा है सफेद कलर का और खिड़की भी दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा बलूंस भी दिखाई दे रहा है जो रेड और येलो कलर से बनाया गया है।

यहां में दुकान दिखाई दे रहा है जो सफेद ग्रीन व ऑरेंज कलर से बनाया गया है।

एक डी_एस_एल_आर_ कैमरा दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा रॉड दिखाई दे रहा है और तार भी दिखाई दे रहा है और पेर भी दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा लड़का और लड़की दिखाई दे रहा है जो ब्लैक व्हाइट ब्लू और रेड कलर का कपड़ा पहना हुआ है।

जिसमें बहुत सारा चिड़िया का पिन करके लिखा हुआ है।

यहां में तीन घर दिखाई दे रहा है ब्राउन कलर का जो बंबू और पत्ता से बनाया गया है।

केबिल दिखाई दे रहा है एक तार दिखाई दे रहा है।

यहां में एक दुकान दिखाई दे रहा है जो येलो ग्रीन और सफेद कलर से बनाया गया है।

श्री दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का डॉट दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का।

बहुत सारा लड़की और लड़का दिखाई दे रहा है जो ब्लू ग्रीन और सफेद कलर का कपड़ा पहना हुआ है।

ये एक दुकान है जो सिर्फ एक कला से बनाये गया है दो खिड़की दिखाई दे रहा है।

तार भी दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का।

बहोत सारा सामान दिखाई दे रहा है जो रेड और ब्लैक कलर का है।

टेबल दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का।

ये एक दुकान है जो सफेद कलर से बनाया गया है।

सामान रखने के लोहा से बनाया गया है ग्रे कलर का इसमें बहुत सारा मिठाई रखा हुआ है व्हाइट ब्राउन ऑरेंज कलर का।

एक इलेक्ट्रिक बैलेंस दिखाई दे रहा है जो लोहा से बनाया गया है।

और बहुत सारा सामान दिखाई दे रहा है जो येलो रेड और सफेद कलर का है।

ये एक घर है जो सफेद कलर से बनाया गया है।

टेबल दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का जो प्लास्टिक से बनाया गया है।

यहां में बहुत सारा घर दिखाई दे रहा है जो वाइट और ब्ल्यू कलर से बनाया गया है।

रवाजा दिखाई दे रहा है ग्रे कलर का जो लोहा से बनाया गया है।

पोल दिखाई दे रहा है ब्राउन कलर का और तार भी दिखाई दे रहा है।